जहाँ ये कोई ना फ़ैक्टरी का होगा यहाँ कुछ उदघाटन वैगेरा या कुछ शादी वैगेरा फ़ैक्टरी --

हैदराबाद की मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि ये कौन -सा भाषा है बट ये समझ में आ रहा है कि ये इधर का नइ है बाहर का ही है बाहर का फोटो है किराना दुकान का हैं।

उसके हाथ देखो दोनों हाथ देखो मस्सल्स देखो कैसे दिख रहा है ठीक है एकदम ज्यादा-ज्यादा और वही उसके पैर देखो--

बुद्ध की कलप्रत वहाँ पे फोटो लगा हुआ है उन्ही का व मीटिंग वागेरा हो रहा होगा वहाँ पे--

कुछ दिए होंगे टीचर इसके शिक्षक लोग --

कुछ बना रहै होंगे कुछ चिपका उपका रहै होंगे।

ड्ड्रॉर बना के रखते है बड़े -बड़े होटलस में ताकि जैसे कोई आ रहे है अ गेस्ट मतलब जो --